और पीछे में एक बड़ा ब्रिज है।

ग्राउंड जैसे कुछ है वहां पे छोटे छोटे पेड़ है।

यहां पे एक फैमिली रेस्टोरेंट दिख रहा है।